ये एक बाइक्स की दुकान है जिसका नाम अंसारी ऑटो एक्स सरीज एंड मशीनरी के नाम से है।

और सामने आप देख सकते है मैंन गेट बना हुआ और बैंक का और विंडो बनी हुई है और सामने घर भी बने हुए है पेड़ भी है इधर।

औ व्हाइट कलर में और ब्लैक कलर में फर्नीचर लगे हुए हैं और लाइटें लगी हुईं हैं।

ये एक देख सकते है ये एक स्टेज है इस स्टेज दो कारपेट बिछा हुइ है रेड कलर में एक सोफे रखा हुआ है वाइट एंड गोल्डन में।

और इधर एक बोर्ड लगा हुआ है अ दू और उस कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे ।

एक अलमारी बनाई हुई है और एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और चद्दर बिछी हुई है इस जमीन पर घड़ी है एक--

ये एक एस_बी_आई बैंक हैं। इस एस_बी_आई बैंक का जो गेट बना हुआ है ग्ले ब्लैक कलर में है। इसका श्ट्टर जो है ब्लू कलर में दिया गया है।

और इसमें कुर्सियाँ रखीं हुई हैं जो पीले कलर में कुर्सी हैं और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं। इधर लाइटें लगी हुई हैं नीले सफेद में।

ऐसी बाइक के खड़ी हुई हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं।

ये एक यूनियन बैंक है जो मज हो गई है आंध्रा में और कोरपोरेशन में मज हो गई है।